यूज़र रजिस्ट्रैशन पंजीकरण फॉर्म कैसे बनाएँ और कैसे माइस्क्ल डेटाबेस में यूज़र को पंजीकृत करें इस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले एक सलाह है कि आप पहले मेरे यूजर लोगिन ट्यूटोरियल्स देखें
मैंने उसका लिंक पोस्ट कर दिया है
मैं आपको इन ट्यूटोरियल्स को देखने से पहले वह करने की सलाह देता हूँ
मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन से पहले यूजर लोगिन बनाने का कारण है क्योंकि मुझे लगता है कि रजिस्ट्रैशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पहले यूजर लोगिन प्रक्रिया करना अधिक सरल है
एक बार जब आप सही से लॉगिन प्रक्रिया कर लेते हैं और आपको डेटाबेस में फील्ड्स मिल जाते हैं आप अपनी रजिस्ट्रैशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं
मुझे इस तरह से करना अधिक सरल लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने डेटाबेस में क्या रजिस्टर कर रहे हैं
इसके साथ शुरू करने के लिए पहले भाग में हम अपना फॉर्म बनाएँगे और अपनी लॉगिन सूचना की मौजूदगी के लिए जाँचेंगे
मेरे मौजूदा ट्यूटोरियल्स में से मैं लोगिन सेशन फोल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ
यहाँ मेरा लॉगिन सेशन और मेरे सभी फील्ड्स हैं लेकिन यहाँ मैं एक नई फाइल बनाऊँगा
पहले कुछ टैग्स जोड़ते हैं
मैं इसे इंडेक्स डॉट पह्प के साथ मेरे लॉगिन सेशन फोल्डर के अंदर बनाऊँगा जिसे आपने देखा था मुख्य पेज है
लॉग इन लॉग आउट और मेंबर पेज यदि यूज़र्स लॉग इन हैं और मैं इसे रजिस्टर डॉट पह्प के रूप में सेव करूँगा
मैं एक यूज़र रजिस्ट्रैशन फॉर्म बना रहा हूँ जिससे कि यूज़र लॉगिन करने के निश्चय से पहले रजिस्टर कर सके
मैंने मेरा रजिस्टर डॉट पह्प बना लिया है और मैं अपनी इंडेक्स फाइल भी खोलने जा रहा हूँ
मैं फॉर्म के नीचे एक लिंक बनाऊँगा
और यह उस रजिस्टर पेज का केवल लिंक होगा और मैं यहाँ रजिस्टर टाइप करूँगा
जिससे कि हमें यहाँ रजिस्टर नामक एक लिंक मिलता है जो हमारे पेज पर जाता है जहाँ हमारे पास अभी कुछ भी नही है
पिछले ट्यूटोरियल का आगामी जहाँ हम लॉगिन कर सकते थे मैं केवल एक पेज का लिंक रखूँगा जिसमें आप यह करने से पहले रजिस्टर कर सकते हैं
अपने डेटाबेस में डेटा टाइप करने से पहले
यदि मैं एक नया विंडो खोलता हूँ मैं पह्प माय एडमिन में जाऊँगा
और यह डेटाबेस है जो इस्तेमाल होगा जिसे पह्प लोगिन कहते हैं और यह मेरा यूजर्स टेबल है
आप देख सकते हैंकि मैंने नामे नामक एक अतिरिक्त फील्ड जोड़ा है और मैं डेट नामक एक और फील्ड जोडूँगा
टेबल के अंत में यह डेट कहलाएगा और मैं डेट फॉर्मेट में रहूँगा तो यह कहाँ है
यह यहाँ है
इससे पहले कि आप परेशान हों कि दिनाँक क्या होगी यह वर्तमान दिनाँक होगी जब यूज़र रजिस्टर करता है
और हम वहाँ जाते हैं और उसे सेव करते हैं
अतः यूजर लोगिन के पिछले ट्यूटोरियल से हमारे पास केवल इद यूजरनेम और पासवर्ड है
अब मैंने एक नाम जोड़ दिया है अतः यह यूज़रनेम होगा और हमने डेट जोड़ दी है दिनाँक जब वह रजिस्टर हुआ है
यहाँ ब्राउज़ करें
हमें यहाँ कुछ वैल्युस पहले से ही मिली हैं
मैं इन्हें डिलीट कर दूँगा क्योंकि मैं मेरे यूज़र्स रजिस्टर कर रहा हूँ
अतः मैं एक साफ़ डेटाबेस से शुरू कर सकता हूँ
मानते हैं कि मेरे पास कोई यूज़र्स नहीं है और यहाँ मेरे पास रजिस्टर पेज की मेरी लिंक है यहाँ मेरा रजिस्टर पेज है
अब मैं इस एचटीएमएल कोड को संक्षिप्त में समझाऊँगा जो आपको बताता है कि इस पेज को कैसे बनाएँ और सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म होगा
यह एक खुद से जमा होने वाला फॉर्म होगा
यह रजिस्टर डॉट पह्प को वापस जमा करेगा
और हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास यहाँ एक रो होगी
फिर हमारे पास दो कॉलम्स है अतः यहाँ दो टीडी ब्लॉक्स हैं और पहले में होगा यूर फुलनेम मैं यह आपके लिए छोड़ता हूँ
केवल तेज़ी से करने के लिए मैं इसे इस तरह से करूँगा
यहाँ हमारे दूसरे कॉलम में मैं अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट रखूँगा और मेरा नामे फुलनेम के बराबर होगा
अतः अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने असली पेज में वापस जाता हूँ रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ
आप देख सकते हैं कि यहाँ यह एक कॉलम है इसे यहाँ अलग करते हैं
यह इनपुट बॉक्स के साथ एक और कॉलम है
और साथ ही मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और पह्प कोड के अंदर मैं एक हेडर एको करूँगा
मैं थोड़ी देर बाद स्पष्ट करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया
अतः हमें यह मिल गया है
इस समय हमारे पास यह है
तेज़ी से करने के लिए मैं इसे नीचे कॉपी और पेस्ट करूँगा
अतः सुनिश्चित कर लें कि आपने ट र से लेकर इंड ट र तक चुना
मैं इसे नीचे पेस्ट करूँगा और फिर मैं लिखूँगा चूसे आ यूजरनेम और स्पष्टतः मैं इसे यूजरनेम में बदलूँगा
मैं इसे फिर से पेस्ट करूँगा और लिखूँगा चूसे आ पासवर्ड
यह टेक्स्ट केवल सुरक्षित करने के लिए है उस परिस्थिति में जब कोई हमारे यूज़र के कंधे के ऊपर से देख रहा हो या कोई स्क्रीन लेने वाला सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में घुसपैठी करने के लिए इस्तेमाल किया हो
और अगला यहाँ नीचेमैं इसे यहाँ कॉपी और पेस्ट करूँगा और लिखूँगा रिपीट यूर पासवर्ड
फिर से यहाँ पासवर्ड
हम फिर से यहाँ पासवर्ड नहीं लिख सकते हैं अतः मैं इसे रिपीट पासवर्ड कहूँगा
जब वह एक बार जमा कर दिए जाएँ यूज़र की कोई गलती करने की परिस्थति में सुरक्षा उपाय के रूप में हम यह पासवर्ड्स की तुलना करने के लिए इस्तेमाल करेंगे
और हमें कोई और फील्ड की आवश्यकता नहीं है
यह अंतिम है
हमें डेट की आवश्यकता है
किन्तु मैं यह तब करूँगा जब मैं फॉर्म जमा करूँगा
ठीक है तो यह हमारी बनाई फॉर्म है
चलिए वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं
आप देख सकते हैं कि यह कैसे समानता से व्यवस्थित है इसलिए हमने टेबल इस्तेमाल किया
हमें एक सबमिट बटन की भी आवश्यकता है
अपनी टेबल के नीचे मैं एक पैराग्राफ ब्रेक बनाऊँगा
और मेरा इनपुट टाइप यहाँ सबमिट होगामेरा नाम सबमिट होगा
साथ ही हमें मौजूदगी जाँचनी होगी और वैल्यू रजिस्टर होगी
चलिए रिफ्रेश करते हैं
हमने कर लिया आप देख सकते हैं कि पासवर्ड्स फील्ड्स खाली हो चुके हैं
यहाँ हमारे पास यूज़र्स को वेल्युस टाइप करने के लिए एक फुलनेम और यूजरनेम भी है
ठीक है इसके बारे में इतना ही है
मैं ट्यूटोरियल यहाँ समाप्त करता हूँ
यदि आप इसका क्रमशः अनुगमन कर रहे हैं सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना फॉर्म लिख लिया है और यदि आपको पसंद हो तो एक और डिजाइन बनाइए
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यह करने का और समय हो
अतः आगे बढ़िये और अपना फॉर्म बनाइए जैसा आप चाहते हैं
इसमें जो आपका मन हो वो करें
इन लेबल्स को बदलें
केवल यह सुनिश्चित कर लें कि आपको आपके बॉक्सेस और आपका रजिस्टर मिला हो
अगले भाग में हम यह जांचने पर बात करेंगे कि यूज़र ने प्रत्येक फील्ड्स में टाइप किया है या नहीं
हम पासवर्ड्स की तुलना करेंगे यह देखने के लिए यदि वह मेल खाते हैं
मेरा मतलब मैं यदि कहता हूँ यहाँ दो पासवर्ड्स हैं और वह मेल नहीं खाते क्योंकि वह अक्षरों की लम्बाई से भिन्न हैं तो यूज़र रजिस्टर नहीं कर सकता है क्योंकि सम्भवतः उन्होंने एक गलती की है
मुहे विश्वास है कि आपमें से काफी देखने वालों ने कहीं न कहीं रजिस्टर कर लिया है और अपना पासवर्ड फिर से टाइप करोगे
हम अपने पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट भी करेंगे और इन फोरम्स में से कोई भी हानिकारक या कोई भी आडंबरपूर्ण ढंग से हानिकारक एचटीएमएल टैग्स को हटाएँगे
अतः हमारे रजिस्ट्रैशन फॉर्म में हमारे पास कुछ सुरक्षा होगी
अतः मैं अगले भाग में मिलता हूँ
देखने के लिए धन्यवाद
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के लिए मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ